यह कोई ग्रॉसरी की शॉप लग रही--

और ऊपर सामने एक रेड कलर की--

यह नर्सरी बहोत ही बड़ी दूर तक दिखाई--

जिसमें बीच में चलने का रास्ता है।

योगा करते नजर आ रहे हैं।